जो की बहुत हरा भरा नज़र आ रहा है |

अंदर सा ग्रॉसरी स्टोर दिख रहा है जिसके अंदर हमें बहुत सारी ग्रॉसरी की चीज़े दिखाइ दे रही है।

इस इमेज में हमें बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो की बहोत बड़ी है उसके ऊपर सफ़ेद रंग का उपयोग किया गया है।

इस इमेज में हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो की बहुत बड़ी है | उसके ऊपर सफ़ेद रंग का उपयोग किया हुआ है।

और रेस्टरों में बहोत सारी लाइटे लगी गयी है तथा उसके ऊपर में नीले कलर और सफ़ेद कलर का उपयोग किया गया है।

यहाँ पे एशिया का बहुत-सा लॉग-ऑन दिखाई दे रहा है जो की उस झंडे को गिराते हुए नजर आ रहे।

वहां पे हमें टेबल के ऊपर दो चार बिसलेरी की बोतल रखी हुई नजर आ रही है।

उसके आस-पास बहुत से झालरे टंगी दिखाई दे रही है जो की रंग बिरंगी नजर आ रही है।

इस बिल्डिंग में हमें लाल और ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं |

वहाँ पे हमें बहुत सारा आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं जो की अपना बाल कटाते हुए नज़र आ रहे हैं |

और बहोत सारी किताबें दिख रही है जो की कहानियों की है।

आगे हमे एक बच्चा दिख रहा है जो की वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जो की --